सामने दुकान है दुकान कपडे की दुकान है दुकान देखने में बहुत शानदार लगता है वहाँ पे मुखड़े भी लगा हुआ है मुखड़े पे उसपे कपडा भी पहनाया हुआ है ले--

सामने एक चित्र बना हुआ है देखने में बहोत अच्छा लगता है उसमें प्रत्येक अलग-अलग चित्र बना हुआ है दो जो चित्र हैं वो सेम है।

ये ओवरब्रिज बहुत अच्छा लगता है देखने में साइड में सिटी रिक्श_ रिक्शा भी है।

और ऊपर आसमान में बादल छाया हुआ है। देखने में बहुत अच्छा लगा--

यह चित्र बोहोत अच्छा लगता है देखने मे सामने एक जग का भी चित्र बना हुआ है।